एक तालाब है और उस-उस पूल है उधर खम्मा है झाड़ निकला हुआ है देखो पानी है बोहोत ज्यादा पोनी है इधर की तरह है।

एक नदी है बहुत बड़ा। उसमें दो लड़का खड़ा है। नाव है एक नाव चलाने वाला है।

रोड है सीधे रोड गया हुआ है और बगल में तालाब है वृक्ष सब लगा हुआ है।

वृक्ष है हरा-भरा चारों साइड है और एक बाइक लगा हुआ है। एक ढाबा की तरह है।